उसका उपर में एक स्केलटन रखा है ह्यूमन स्केलेटन । ह्यूमन स्केलेटन का कलर वाइट है।

लिवर भी विजिबल और लिव लीवर भी लीवर भी दिखाई दे रहा है। लीवर का कलर डार्क रेड है एंड पीछे में पर्दा भी है।

बिल्डिंग है इनका कलर व्हाइट है एंड मल्टीप्ल विंडोज भी है।

बादल भी है बादल का कलर ब्लू एंड व्हाइट है।

फोटो के अंदर मुझे बहुत सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

लेफ्ट वाला घर का कलर ब्लू है और पिंक मिक्स है।

मुझे दो आदमी दिखाई दे रहा है।

इसके साइड पर मुझे मल्टीपल चेयर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा कॉपी एंड पेन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे एक और बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

इक मिडिल में एक एंट्रेंस भी दिखाई दे रहा है।

एक बोतल कॉर्नर में मुझे तीन बोतल दिखाई दे रहा है एण्ड लाइट्स भी।

शॉल का कलर ब्राउन एंड व्हाइट है।

इस फोटो के अंदर में मुझे बहुत सारा आदमी लोग काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

जे मेटल स्टिक भी दिखाई दे रहा है जहां से ये लोग सीमेंट का फ्लोर बना रहे हैं।

मेरे सामने एक आदमी खड़ा है इसका कपड़ा ब्लैक है एंड सिल्वर एंड व्हाइट है।

एक ओल्ड मैन एक बैग पकड़ा हुआ है ब्लैक कलर वाला।

बेड्स के ऊपर चादर लगा के रखा हुआ है ब्लू वाला एक--

मुझे दो इंसान दिखाई दे रहा है एक फीमेल एक मेल एंड मुझे फ्लोर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है।

टॉप में एम स्क्वेयर फिटनेस दिख लिख क्लब लिख कर दिखाई दे रहा है। एंड फोकस मोटिवेशन डेडीकेशन एक्स एक्सक्यूज दिखाई दे रहा है लिख के।

फोटो के अंदर मुझे मल्टीप्ल बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बादल भी दिखाई दे रहा हैं बादल व्हाइट कलर वाला है एंड ब्लू मिक्स है।

बहुत सारा दिखाई दे रहा है लिप्स भी।

ये दो सिंटेक्स दिखाई दे रहा है।

टॉप में भी एक क्रॉस लगा के रखा हुआ है।

ब्राउन कलर वाला रस्सी भी दिखाई दे रहा है एण्ड दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।